यह एक रेस्टोरेंट का व्यू है।

इस ऑफिस को काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया गया है।

यह रोहतक का सबसे प्रसिद्ध मंदिर दुर्गा भवन मंदिर है।

यह एक जिम का व्यू है।

यह एक लहंगे का शोरूम है।

इस इस फोटो में शादी का मंडप दिखाया गया है जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

यह एक रेस्टोरेंट का व्यू है।